यहाँ एक औरत गेंद ले कर फुटबाल ले कर खड़ी हुई है। एक आदमी उधर देख रहा है। एक छोटा बच्चा है एक छोटा गाड़ी में बैठ के --

और मजेदार भी लगती है।

अच्छे तरह से सजाए गए हैं और देखने में भी--

स्कूल का जो कि बच्चें विथ पेरेंट्स आए हुए हैं।

और स्नो में सब कोई चिल कर रहा है। बहोत ही --

हाँ कांच का सब जगह बना हुआ है कुर्सी है गद्दा वाला और --

जहां बच्चे सब पढ़ते-लिखते हैं इगजाम देते हैं। अपना फ्यूचर बनाते हैं। टीचर आते हैं पढ़ाते हैं।